यां बाल बनाये जाते हैं क्युकी वो वही से दिखरा है न।

प्यारी मच्छी को कैसे मार दिया गया है और उसमें देख लो क्या लिख रखा है तीन सौ --

अच्छा है पर पेड़-पौधे दिखे जाये तो।

और गलती से कुछ गिर गया आग-उग्ग लग गई तो बहुत नुकसान होगा।

वो तो अच्छा है बहुत ही अच्छा है उसपे --

यहाँ मलब बहुत पुरानी है अच्छी है इसमें लाल खम्बा टाइप का लगा रहा है और कलर -कुलर कर रखा मेरे को तो यही लगरी कोई ऐसी जगह मलब --

हा ये दृश्य में दिख रहा है कि मतबल पतानी क्या मतलब ऐसा फैला रखा है कुछ।

जो द्रिश्य दिख रहा है मतलब किसी कार्य कर्म करने का हो रहा है।

बाल बहुत ही बेकार लगते है बॉडी तो मस्त है इसकी बहुत ही अच्छी है।

और फिर खुद उतारा मलब अच्छा है बस मलब बहुत अच्छा कर रखा है और खोल रखा है मलब दिखने के लिए लोग देखें इस --

और इसके नीचे हनुमान हनुमान हनुमान बाजार गई और बहुत ही अच्छा है।

जो ये है दिखाई काम काम --

ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है किसी स्कूल का लग रहा है क्योंकि जो इसमें बेस्ट दिखरी है।

एक फोटो ली गई है और उसमें अच्छा ही है और --

हम अंदर नहीं सकते हम बहार देख सकते सही है ऐसे में चोरी का वो होता है की --

खम्बे के नीचे एक नीला घर में --

जो भी है और लोग भी है।

प्रो गई नदी है काका नदी --

पेड़-पौधे कितना अच्छा लग --

और अच्छे ये हैं और सामने शनी देव का मंदिर है अच्छा है शनी देव हे या चरच है पता नहीं चल रहा पर चर्च भी हो --

तो टवाय जहा से ये मतलब बिजली बनाई जाती है हमें तो कोई की तस्वीर लग रही है और यहाँ पे कुछ झुल्ला झुल्ला टाइप का है।

ये जो बहुत ही सुन्दर लग रहा है।